इसमें कुछ आदमी दिख रहे हैं जो कस्टमर होंगे।

यहां पे एक सृज दिख रही है और समोसे बने हुए हैं।

इसके आस पास बहोत सारे छर है जो की ढला हुआ नहीं है।

उसने पगड़ी पहने हुए है जिसकी कलर ब्लू है।

घरों के आसपास बिजली वाले खंभे है जिस पर लाइट लगी हुई है।

छोटे छोटे घर दिखे हैं जो की उजाले और लाल कलर से बने हुए हैं।

यहां पर कुछ आदमी दिख रहे हैं एक लेडिज है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है।

यह एक दुकान है जो कि व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

इसमें कीबोर्ड भी लगा हुआ है।

आसपास से बहुत सारे बिजली वाले खंभे दिख रहे हैं जिसमें तार लगे हुए हैं।

जो की गोल्डेन कलर का है।

घर के आसपास छोटा सा गार्डन बना हुआ है।

पहाड़ों के बीच में बहुत सारे आस पास में बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

एक बाउंड्री है और उसी गार्डन के पास में एक रोड दिख रहा है।

ओल यहां पानी भी है पीछे बहुत सारे पेड पौधे है।

यहां पे एक रूम में कुछ टेबल और चेयर लगी हुई है।

रूम में एक खिड़की भी है जो कि खुला हुआ दिख रहा है।

यहां पे एक फंक्शन हो रहा है।

आज इसमें बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं।

ये एक बालकनी का है अ जिसमें बहुत सारे रूम है उसमें बहुत सारी खिड़कियां है।

कुछ खिड़कियां है खिड़की में लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं।

अ रूम का कलर पीला दिख रहे हैं बहोत सारे पर्दे लगे हुए हैं।

ये एक स्टेज है जिसपे फंक्शन होता है।